कहीं प्याज भी रखी हुई है एक टैंकर भी हेगा बड़े-बड़े भागोने हेंगे बहोत --

सामने हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं नीला-नीला आसमान हैगा ग्रीन कलर की बिल्डिंग भी हैगी जहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं कोलम भी खड़े हुए हैं।

और हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं| यह हरी-भरी घास नीला-नीला आसमान है।

एक रोड है जिसके सामने एक संगिल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हैगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिल रहा हैगा।

बोर्ड लगा है टाटा स्काई का भी बोर्ड लगा है एक लेडी मास्क लगा के जा रही हैगी नीला-नीला आसमान है हरे-हरे--

बोर्ड हेगा जहाँ पे स्काईबैग्स की दुकान हैगी वहाँ पे ऋतिक रोशन बना हेगा बैग लेके खड़ा हुआ हेगा।

एक मैदान हैगा जहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैंगे बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ बनी हुई हैगी।

यहाँ पर एक रेड कलर का ऑटो खड़ा हुआ हेंगा जिसके अंदर ब्लैक कलर की सीटे लगी हुई है और--

कांच भी लगा हुआ हेगा ग्रीन कलर का नीचे कारपेट पड़ा हुआ हैगा हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हेंगे और रेड कलर का चूल भी रखा हुआ है।

छोटा सा कमरा हेगा जिसमे लाइटे भी लगी हुई है| और प--

जहाँ नमाज़ें रखी हुई हैं और कुरान पाक भी रखे हुए हैंगे और हदीसें भी रखी हुई हैंगे जहाँ पे टेबल फैन भी लगे हुए हैं और लाइटें भी लगी हुई हैं।

कुछ गाड़ी पर खड़े हुए है तो एक गाड़ी भी खड़ी हुई है यह --

यह एक छत है जहा पे बिजली के तार जा रहे है| रस्सी बनी हुई है| टंकी रखी हुई है पानी की ।